तथा कुछ लोग खड़े हुए हैं तथा चार पे पांच लेडिज लोग बैठे हुए हैं।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है कि ये दो से तीन मंजिला बिल्डिंग है।

ढाबे में टीन शेड का यूस किया गया है जिसमें येलो कलर के पोल्स कि मदद ली गई है।

बंदा जिस कुर्सी पे बैठा है वो रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में है।

इस इमेज में जो दिखाया गया है वह एक कार्यालय है जिसका नाम है सहायक श्रम आयुक्त ललितपुर।

नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है जोकि बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन है।

पूजा की थाली भी रखी हुई है जो पीतल की दिख रही है।

काउंटर में नीचे पिलाई का यूज किया गया है जिसका कलर पिंक और वाइट कलर का है।

बच्चे इतने छोटे हैं कि उनकी ठीक से आंखें भी नहीं खुली हैं।

इनमें से एक आदमी व्हाइट कलर की शर्ट पेहना हुआ है तथा ब्लू कलर की पेंट पहना हुआ।

इसके पास में एक छोटी सी नाव भी दिखाई दे रही है जो की व्हाइट कलर की ह--

इमेज में जो दिख रहा है वो एक पुरानी कार है जो कि दुर्घटनाग्रस्त लग रही है जीसका बोनट खुला हुआ है और इंजन दिख रहा है।

मंदिर के बगल में एक तालाब है जिसका पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है।

सामने गेट पर एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है जो कि टोयोटा कंपनी की है।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कि बच्चों का प्लेग्रुप स्कूल है।

ग्रीनरी काफी अच्छी लग रही है तथा साइड में घास को कटिंग की गई है।

सामने की तरफ जो टंगी हुई वस्तुएं हैं वो नमकीन स्नैक्स और कुरकुरे वगैरा लग रहे हैं।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो कोई समुद्र या तालाब लग रहा है जिसमे दो से तीन लोग सामने की तरफ नहा रहे हैं।